इस फोटो में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे लाईटें दिखाई दे--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

इस फोटो में मुझे महिला पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे मोबाइल टावर दिखाई--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

इस फोटो में मुझे चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे छोटे छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे बहोत सारे पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मैं मुझे कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे लाइट की सजावटे दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे मकैनिक की दुका--

इस फोटो में मुझे बिजली के खंभे और तारे दिखाई दे रही है।